जहां पर काफी सारे पक्षी हैं।

पीछे काफी सारे डब्बे पेटीयां वगैरह रखी हुई हैं।

पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक शॉप दिखाई दे रहें--

जो एक चिल्ड्रन बुक शॉप है जिसके आस पास कुछ और दुकाने भी है।

जहां पर काफी ज्यादा सामान रखा गया है।

एक जगह दिख रही है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

है यहां पर एक शेड भी है।

भीड़ है और काफी ज्यादा लाइटे भी है रात का सम--

यहां पर मुझे एक जगह --

इंग्लिश में लिखा है श्याम मेडिकल स्टोर और यहां पर काफी ज्यादा दवाइयां रखी हुई हैं।

पेड़-पौधे काफी ज्यादा दिख रहे हैं। हरियाली दिखाई दे रही है।

किसी और लैंग्वेज मे भी लिखा गया है।

और काफी खुली जगह है पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

कुछ टेबल्स भी लगे हुए हैं।